पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है उसके सामने एक लाल कलर की कुर्सी भी रखी हुई है फूल एक सफ़ेद कलर के कपड़े पे रखे हुए है।

सामने एक दूकान दिखाई दे रही है दूकान में चार-पांच लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर कुछ बैलून भी लगे हुए हैं।

इसमें छोटी-छोटी घास उगी हुई हैं बिल्डिंग में जाने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं।

बोट में कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं पानी नदी में बहुत सारा है आस-पास लोग देख रहे हैं।

वहां पर एक कागज़ और पेन भी रखा हुआ है सामने की तरफ एक कैलेंडर भी टंगा हुआ है वहां पर लाइट भी चल रही है।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

छोटी-छोटी घास भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पर छोटे-बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं।

फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं उन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं कुछ लोग बाइक ले कर खड़े हुए हैं।